तथा यहाँ पर कुछ हरी - हरी घास दिखाई दे रही है यहाँ जमीन का रंग भी भूरा सफ़ेद है।

इसकी नंबर प्लेट पिले रंग की है जिस पर काले रंग से डी डी टू फोर ए सेवेन नाइन फाइव थ्री लिखा हुआ है।

इस पर एक ऊपर निले रंग से यु के एस भी लिखा हुआ है जमीन का रंग भूरा है दिवार का रंग सफ़ेद और भूरा दिखाई दे रहा है।

जैसा की मे देख पा रही हूँ मुझे यहाँ पर बहोत बड़ी इमारत दिखाई दे रही है पिले और लाल रंग की इमारत तथा यहाँ पर--

जैसा कि में देख पा रही हूं मुझे यहाँ पर एक बोर्ड दिखाई दे रहा है जो हरे रंग का जिसपर टाइगर --

इसने काले रंग के कपडे पहने हुए है पीछे दीवारों का रंग हरा और काला है जमीन का रंग भूरा है।

भूरा है बादल हरे - भरे है तथा यहाँ पर हरे - भरे पेड़ लगे हुए है आस - पास कुछ लोग भी दिख रहे है।

भूरा है छोटे तथा बड़े दोनों ही प्रकार के डिब्बे रखे है और ऊपर दिवार का रंग सफ़ेद है जिस मे कुछ गत्ते रखे हुए है।

जैसा की मैं देख पा रही हूँ मुझे यहाँ पर कुछ बच्चे जमीन पर बैठे हुए दिखाई दे रहै है ये क्राफ्टिंग का काम कर रहै है ये पेपर द्वारा कुछ बना रही है।

पीछे दिवार का रंग लाल है तथा नीचे कुछ बैगनी पट्टी भी बनी हुए है खिड़की है खिड़की जालीदार है तथा --

जैसा की मे देख पा रही हूँ मुझे यहाँ पर पुरुष दो व्यक्ति दिखाई दे रहे है सफ़ेद रंग की कमीज़ पहनी तथा भूरे रंग की पैंट जमीन का का रंग भी--

भूरा और काला है यहाँ पर इमारत का रंग आसमानी और सफ़ेद है शतरदार है इमारत बनी हुई है।

हरे भरी घास दिखाई दे रही है किनारों पर घास भी लगी हुई है तथा पेड़ छोटे व बड़े है।

जैसा की मै देख पा रही हूँ मुझे यहाँ पर बहोत छोट-छोटे पेड़ रखे हुए दिखाई दे रहे है जिन पर हरे पत्ते ज्यादा है इस पर फूल लगे हुए है जो पिले और गुलाबी रंग के है।

यहाँ पर पेड़ों के बीच मे एक व्यक्ति खड़ा है जिसने सफ़ेद रंग की कमीज पहन रही है।

जैसा की मे देख पा रही हूँ मुझे यहाँ तीन लोग दिखाई दे रहे है ये लोग खड़े है दो व्यक्ति ने काले तथा एक ने सफ़ेद रंग के कपड़े पेहन रखे है जमीन पर कारपेट है कारपेट का रंग हरा है।

जैसा की मै देख पा रही हूँ मुझे यहाँ पर भूरे-भूरे रंग की सीढ़िया दिखाई दे रही है।

एक इमारत दिखाई दे रही है जो भूरे रंग की है दो सीढियां है सीढ़ियों का रंग भूरा है तथा जमीन पर कुछ पत्ते भी --

जैसा की मे देख पा रही हू मुझे यहाँ पर एक इमारत जिसका रंग साफ़ और सफ़ेद है।

जैसा की मे देख पा रही हूँ मुझे यहाँ पर बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है हरे-भरे पेड़ तथा यहाँ किनारो पर हरी-हरी घास भी दिख --

पेड़ और घास दिखाई दे रही है दिवार का रंग सफ़ेद है।